रिक्शे के पास ही एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग के ऊपर कुमार करकट का एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिस पर बहुत सारे मुर्गी भी दिखाई दे रहे हैं और मुर्गी अलग-अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं।

बालकनियों पे भी बूकें रखी हुई दिखाई दे रही एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है। बोर्ड पर शिप शारदा पुस्तक पैलेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक सड़क दिखाई दे रही सड़क के राइट साइड एक पार्क दिखाई दे रहा है।

एक बडा-सा पहाड़ दिखाई दे रहा पहाड़ में बोहोत सारे छोटे-छोटे पेड़-पौधे उगते हुए दिखाई दे रहे।

दिखाई दे रहा है जिसका घाट लिखा एअरपोर्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है |

एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है तालाब का पानी हरा और काला दिखाई दे रहा है तालाब के किनारे सीढ़ी लगी हुई दिखाई दे रही है सीढ़ी पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो टोपा लगाये हुए जैकेट सफ़ेद कलर की जैकेट और ब्लू कलर का पेंट और --

कुछ मकान भी ऐसे बने भी दिखाई दे रहा है ऊपर असमान भी रंगीन दिखाई दे रहा है।